इस फोटो में मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे लहे हैं।

इस फोटो में मुझे कूलर दिखाई दे ला है।

इस फोटो में मुझे रोड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कार बाईक ऑटो दिखाई दे रही है।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

फोटो में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे बड़ा झूमर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही हैं।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

फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रही है।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

बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बिजली का खंभा और तार दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे राम सीता की रंगोली दिखाई दे रही है।